यह दृश्य में सिटीस्कैन विभाग जिला चिकित्सालय अ बड़ा का बोर्ड लगा है जे और वहाँ एक --

यहाँ यूको बैंक अ का एक ब्रांच है जिसमें ए जिसके बाहर ब गाड़ियाँ लगी हुई हैं।

बगल मे दो बड़े बड़े फ्यूज़ लगे हुए हैं।

वहाँ नीचे ईंटे बी रखी हुई है कुछ लोग आना-जाना कर रहे हैं यह म काफी गंदगी --

यह एक होटल का दृश्य लग रहा है। जिसमे रंग-बिरंगे बैलून से सजी हुई है।

यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कई लड़किया अपने-अपने नृत्यकला को दिखा रहीं है प्रस्तुत की हुईं है।

घरों के रंग रंग-बिरंगे हैं और सब यहाँ घर बहौत ही पुराने लग रहे हैं जो प्रतीत होता --

और न वहाँ वे पूज़ा कर महिला पूजा कर रही है।

बारिकों में बनाई गई है जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ दृश्य पु बहोत पुराने जमाने की है।

यहाँ एक पर्यटक स्थल है जिसमें जिसके बीच में एक कुटिया बनी हुई है।

कुटिया क ऊपर घास फूस लगे हुए है और बगल में सोलर प्लेट की पोल गड़ी हुई है।

इसमें कई व्यक्न् एक व्यक्ति जाते हुए प्रतीत हो रहा है।

बनाई जा रही है हर म्-यहाँ छंड़ सीमेंट स्-बालू --

अं-उ-ग् घर की मरम्मती घर म्-घर बनाई जा रही है। मिस्त्री ल --

शीशे की गेट लगी हुई हैं जो देखने मे बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा हैं।

यह दृश्य एक अ शॉप कील दुकान की लग रही है जिसमें साज सजावट की सभी सामग्री उपलब्ध है।

और पेड़ म झाड़ बहोत साडी उगी हुई है हरी-भरी झाड़ दिखाई दे रहा है।

हाँ सामने हरी-भरी घास र लगी हुई है और दूर में कई बकरियाँ --

चर रहे हैं जो सभी--

अ जिसके बाहर कुर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। यहाँ सामने प्रतीत होता है कि किसी इंस्ट्यूट की --